और एक पुल भी बना हुआ है और सामने यह आदमी भी खड़े हुए हैं और एक परचून की दुकान भी खुली हुई है।

और इसके दोनों तरफ हरियाली आई हुई है और फूल भी खिले हुए--

और तीन छत में फैन लगे हुए हैं और कुछ लाइटें भी लगी हुई हैं।

और पहाड़ी के ऊपर पेड़ भी खड़े हुए हैं।

और एक आदमी उस उनको देख रहा है।

और इसके पास में एक पेड़ भी खड़ा हुआ है।

ये एक पार्क है घूमने का।

इसके अंदर छोटे छोटे पेड़ भी लगे हुए हैं।

और इनके पेड़ के आगे महिला और बच्चे और पुरुष खड़े हुए है।

और एक ऐ_सी भी लगी हुई है और एक फैन लगा हुआ है।

और इसके ऊपर एक बिल्डिंग है बिल्डिंग में एक दरवाजा लगा हुआ है।

और इसके पास में कुछ पेड़ भी खड़े हुए हैं।

ये एक बहोत ही सुंदर जंगल है।